दूर से पहाड़ भी ज्यादा दिखा रही है और यहां कुछ पानी जल रहा--

ये तो कुछ फंक्शन की माहौल जैसे हैं यहां ज्यादा लोग बैठा हुआ है सब लोग--

ब्लैक कलर शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है और वहां दीवार है और ग्लास फोटो भी--

गुलाब गुलाब का फूल और कुछ तरह के फूल दिख रही है।

यहां तो एक दीप का कुंद भी है और एक स्ट्रीट लाइट भी दिखा रही है यहां तो पेड़ पेड़ पौधा भी है यहां बढ़िया अशोक आ --

नेशनल फ्लैग के कलर में दिखा रही है लाइट ऑरेंज कलर वाइट ग्रीन कलर का और कुछ पौधा भी --

चोटा- चोटा पौधा है और पेड़ भी ज्यादा पेड़ भी है और बढ़िया पेड़ तीन चार पेड़ भी दिखा रही है और पेड़ का पत्ता हरा भरा दिखा रही है नीचे--

काशाई का कपड़ा पहना हुआ है और एक पंडित ऊपर वाइट कलर टॉवल पहना--

छोटे कुछी कुर्सी भी है बैठने का और कुछ डाल दाल भी दिखा रही है और --